यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे लाइन लगी हुई है लाइट लगी हुई है ऊपर भी है ।

एक ये लड़की है इसने ये डांस इसने लाल तपड़े पहने हुए है।